लकड़ी रखिए खबड़ा खंबा है जहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग में दुकान है। ल

ला और इधर कुछ फत्ता है।

यहाँ से कृष्ण भगवान जी की य सब नकली मूर्ति बना रखी हैं यहां पर ड्रामा चल रहा है।

कुछ साइकिल रखी हैं कुछ पेड़-पौधे रखे हैं।

यहाँ मैं देख रही हूं बच्चे वो सारे चौगाने हरा हरी हरी दूए कुछ खम्बे हैं।

कांच की खिड़की है।

नीला कलर का झंडा लगा है वाइट कलर का लगा है पिंक कलर का लगा है इधर कुछ झंडा कुछ छतरी है तीन मंजिल घर है।

इधर कुछ पेड़ हैं जंगल है।